जमीन साफ़-सुथरी है। हरी-भरी घास भी है ।

साथ में चार कप चाय भी है।

दीवारों पे बोहोत से तस्वीरें है। खड़े हुए व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं।

एक व्यक्ति बैठा हुआ है।